यह आदमी जंगल में खड़ा है और यह पहाड़ के साथ खड़ा है इसने पहाड़ पर हाथ रखा हुआ है यहां पर पहाड़।

और उसके पीछे एक दरख्त भी लगा हुआ है ऐ और आदमी दोनों चलकर अपने-अपने काम करने के लिए जा रहे हैं।

केस के लिए आते है और यहां अभी भी एक लड़का में जोधा जिसने ब्‍हाईट कलर की र्शट में जो पहनी हुई हे और वो ऐ वेट डा --

यह सामने एक मंदिर है वहां बहोत ज्यादा लोग--

साइड पे एक छोटा सा बाग है जिसमें फूल वगैरह--

ये एक वाइन क्लब है यहाँ पर वाइन की बहुत ज्यादा बोतलें पड़ी हुई है यहां पर टेबल --

यहां पर लोग सारे अपना कल्चर सेलि सेलिब्रेट कर रहे है और वहां पर ।

यहां पर मैन गेट के सामने खड़े होकर इसने अपनी अपनी पिक ली है और साइड पर इसके पिलर खड़े किए गए हैं।

व्हाइट कलर किया हुआ है और ये सामने सड़क है ये अंदर जाकर --

ये इंडिया का कांडला एयरपोर्ट स्टेशन है यहाँ पर यहाँ पर ये सामने ब्लू कलर का वेलकम टू कांडला एयरपोर्ट अह बे--

यह एक कॉफी शॉप है यहां पर बहुत ज्यादा टेबल चेयर मौजूद है यहां पर ।

है यहां पर सामने एक लड़का और एक लड़की बैठी है और वहां पिलर के पीछे भी एक लड़का है।

ये गोपाल ड्रायफ्रूडर की दुकान है यहां पर यहां पर ड्रायफ्रूट सेल किये जाते है ये दिल्‍ली में मजूद है और ये--

लेकर जा रहा है और पीछे साइकिल पर एक लड़का आ रहा है जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है।

यह एक पार्क है पार्क में छोटी-छोटी ग्रास भी है और यहां पर अ।

यह फेजी कार वर्क शॉप है यहां पर कार एसी वगैरा सेटिंग किया जाए करवाए जाते हैं यहां पर ।

ऐ कार के टायर्स चेंज करवाए जाते है यहाँ पर फ्यूल वगैरा सब कुछ मजूद होता है।

वर्कर सारे वर्कर अपना-अपना काम ख़त्म कर रहे हैं ये--

अ यह तीन बाइक और एक कार भी खड़ी हुई है और अस्पताल के सामने एक ।

लंबा सा खंबा है उस में बहुत ज्यादा तारें हैं और आस-पास बहुत ज्यादा --

ये एक हॉस्पिटल है यहाँ पर वाइट और रेड कलर की जो है वो सामने फ्रन्ट पे टाइल लगी हुई है और साइड में बहुत ज़्यादा खिड़कियाँ है।

बहुत जादा लोग इंजी यहां पर डाकोरेशन का काम रहे हैं और वहां साइड में वहां--

ये ऐस_बी_ऐ सलून है यहाँ पर अ यहाँ पर लोग हेयर कटिंग --

ये दीवार पर पीछे बहुत जादा तस्‍वीरें लगी हुई है और यहां पर सामने सोफे पर--

ये घूमने वाला झूला है जिसके ऊपर बच्‍चें बैठ कर झूल लये थे और वो सामने ऐलों --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

एक पार है इसके सामने एक खुला सा मैदान है जिसकी उसमें ग्रीन ग्रास लगी हुई है और कुछ दूर के दृश्‍य लगे हुए इनके सामने --